छैपी भी बने हुए हैं यहाँ स्टेप की दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है और यहाँं कई सारी कुर्सियां भी है और कुर्सियो के ऊपर पोस्टर भी लगे हुए हैं। कोका-कोला भी मिलता यहाँं।

सुंदर दिख रहे हैं और यहां काफी सारा पानी भरा हुआ है बहोत सुंदर दिख रहे हैं।

खड़ा है और उसके पास एक कट्टा रखा है और यहाँ दुकान भी है। यहाँ दुकान का बड़ा काउंटर बना हुआ है और टिन भी पड़ी हुई है ऊपर।

यह देखिए यहाँ टेंडर का काम चल रहा है इंजीनियर भी खड़ा है।